यह एक पार्क का फोटो है जहां पर--

यह एक टूटे फूटे किले का फोटो है जहां पर।

यह किला देखने मे काफ़ी पुरना नज़र आ रहा है।

लाइट भी लगी हुई है।

इस कार के पीछे बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ दिखाई दे रहे है।

दो-तीन पानी वाला टंकी भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर--

कुछ पाइप भी नजर आ रहे हैं दुकान के बाहर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

होटल के अंदर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और इसके बाहर--

नई कार खड़ी नजर आ रही है और शाय--

बहुत सारी लाइटें लगी हुई है सामने एक--

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ कुर्सियां और टेबल रखे हुए हैं।

इस घर के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और गेट भी लगा हुआ है।

एशिया होटल भी लिखा हुआ है।

होटल की दिवालों को सफेद और भी--

और इस मिल के दीवाल पर--

यहां पर तीन लोग और एक महिला दिखाई दे रही है। और जिस हाथ में एक कप है।

मंदिर के बगल मे एक दो और--

इस फोटो में एक बड़ा भवन दिखाया गया है जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है और--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

इस फोटो में बहुत सारे--